इस रूम के अंदर एक छज्जी नजर आ रही है।

एक वाइट कलर का रेक बनाकर बहुत सारे बीज सजिया करके रखे हुए नजर आ रहे हैं।

मीटिंग रूम दिखाई दे रहा है जो एक व्यक्ति मीटिंग करने के लिए अपने दोस्तों को समझाते हुए दिखाई दे रहा है।

टेबल पे रखी हुई बॉटल भी दिखाई दे रही है।

गार्डन एरिया भी दिख रहा है।

बस भी दिखाई दे रही है।

और इस टेबल के ऊपर रखे हुए सॉस भी दिखाई दे रहे हैं।

एक ऑटो भी दिखाई दे रहा है उसी के पास एक बनती हुई बिल्डिंग भी नजर आ रही है।

यहां पे रेड कलर की मैट भी बिछी हुई है।

इस दृश्य में हमें एक लड़का दिखाई दे रहा है और उसके साथ एक बच्चा भी दिखाई दे रहा है।

उस लड़के ने एक स्कूल यूनिफॉर्म पहनी हुई है।

इस दृश्य में हमे एक पार्टी हॉल दिखाई दे रहा है जहां पे बहुत ही जड़ा खुबसुरत तरीके से वाइट और पिंक कलर ऐंड येलो कलर के बैलून से डेकोरेशन की गई है।

इस हाल के बीचो बीच एक व्यक्ति खड़ा है।

यह दृश्य एक हॉल का है जिस हाल में बहोत सारी लाइटें लगी हुई नजर आ रही है।

सीलिंग पे कुछ फैंस भी नजर आ रहे हैं।

पेड़ पौधे भी दिख रहे हैं।

टेबल पे मेन्यू और ग्लास वगैरा रखी हुई दिखाई दे रही है।

और इस दृश्य में एक टी_वी भी नजर आ रही है और बहुत सारी ला--

सामने बहोत ही लंबा लाइट के खंभे लगे हुए हैं।

इस दृश्य में कुछ व्यक्ति भी दिखाई दे रहे है जो भगवान की पूजा कर रहे है।

चर्च के बाहर एक जीजस की मूर्ति भी दिख रही है।

इस दृश्य में बहुत ही खूबसूरत छोटे छोटे घास भी नजर आ रहे हैं।